और मिर्ची भी रखा हुआ है और तराजू है और एक झोला भी रखा हुआ है।

एक एक कचोरी भी है सफेद कलर का ट्रे है।

और पीछे की ओर घर भी है एक आकाश नीले रंग का है बस का किनारे सड़क है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पे अलग अलग कार्य हैं।

पोस्टर पे लिखा हुआ है हरीश क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस।

यह ऑफिस का चित्र है और यहां पे ढेर सारी कुर्सी हैं और यहां पे एक व्यक्ति है ।

और बहुत सारे नालियर का पौधा लगाया हुआ है।

और तार का वायर है नीले रंग का आकाश है बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

और बहोत सारे खिड़की हैं और बहोत सारे दरवाजा भी हैं ग्राउंड को तारसे घेरा हुआ है।

अलग अलग ड्रेस पहन के बच्चे लोग हैं एक लड़का सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।